सामने एक छोटा सा रूम नजर आ रहा है। रूम का मी सामने दरवाजा नहीं लगा हुआ है। ऊपर ब्लू कलर में लिखा हुआ है फीमेल जनरल वार्ड --

अंदर एक बड़ा सा लाइट जल रहा है यहाँ किनारे सफ़ेद कलर की एक टंकी नजर आ रही है।